एक डस्टबिन रखा हुआ है लाइट्स लगी हुई हैं और उसमें बहुत सारे खिड़कियाँ हैं।

जलेबी और चने दाल सब कुछ धरे सखे हुए हैं और इसके नीचे --

आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है यहां पर गाड़ियों --

और इस के.टी.एम. के बाहर कांच लगा हुआ है।

पहाड़ है और आप देख सकते हैं की कुछ लेडिस है।

कुछ दुकान लगी हुई है ओर यहां --